इधर मछली के जैसा और एक पूल बना रहे है।

नमस्कार आप जैसा देख सकते है की यहाँ पे नदी है और एक नाव है और ये जैसे की नदी किनारे नाव को बांधा गया है।

और एक खुला आसमान है ये देखने के लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा साइड --

नमस्कार आप इसे देख सकते है यह एक घर बन रहा है और दीवारों--